ये एक मेन सेलोन है जिसके बाहर छह लोग हैं।

यह एक इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है यहां पे कीबोर्ड रखा हुआ है माउस है।